दूर से ली गई तस्वीर में एक मॉनेस्ट्री दिखाई दे रहा है। जो की देखने में बड़ा और सुंदर है।

यहाँ हमें एक बड़ा-सा गेट दिखाई दे रहा है जो की देखने में तो सिंपल है पर इसका डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है। हमें हम इस गेट के ऊपर कॉलेज का नाम लिखा हुआ देख पा रहे हैं जो की अंग्रेजी में लिखा हुआ है।

एक हवाई अड्डे का दृश्य है जहाँ पर हमें एक हवाई जहाज दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर बहुत से लोगों को देख पा रहे हैं।

यहाँ पर हमे क्रिसमस ट्री भी दिखाई दे रहा है। जमीन पर हमे बहुत सारी तिरपाल बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चेयर यहाँ पर लगे हुए हैं। देखने में रूम काफी बड़ा और सुन्दर लग रहा है।

यहाँ पर हम एक बनता हुआ इमारत देख पा रहे हैं जो कि अभी पूरी तरह बना नहीं है। यहाँ पर हमे बहुत सारी मजदूर कड़ी मेहनत करके काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखने में यह दृश्य अच्छा लग रहा है।

ये में हमें मोंनेस्ट्री दिखाई दे रहा है जिसका गेट देखने में बहुत ही सुंदर है। बड़े ही सुंदर तरीके से इसे डीज़ाइन किया गया है।

साथ ही हम इसका दरवाजा और खिड़की बंद देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है की जैसे ये चर्च बंद है। हमें यहाँ पर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में हमें एक ऑफिस दिखाई दे रहा है जिसके सामने हमें बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं। हमें गेट पर इसका नाम भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा--

यहाँ पर हम बॉउंड्री मै हमारे देश का रंग रंगा हुआ देख पा रहे है। देखने मै यह दृश्य अच्छा लग रहा है।